ये एक समुद्र है यहां यह बहुत ही बड़ा समुद्र लग रहा है और पूरा पानी है इसमें।

अ पेड़ भी है उचा -उचा।

यहाँ बोहोत सारा बैट रखा हुआ है अडिडास टोन एस.एस. --

और उधर पूरा बैठने का जगह बनाया हुआ है|